बीच से फुट पाथ बनी है जिसके पास में बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

इसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है जो लाल रंग का है।

दीवार पर बहोत सारे खानों में रंग-बिरंगे डब्बे रखे हुए नजर आ रहे --

साइड की तरफ हमें दुकान का शटर लगा हुआ भी नजर आ रहा है।

यहां पर बहोत सारी लड़कियां नृत्य करते हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक खाली स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

जहां पे अंदर बहोत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक स्टेज प्रदर्शन दिखाई दे रहा है।